भाइयों जैसा की आप सभी लोग देख रहे है। हमको यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। हमको यहां शीशे के गेट और खिड़कियां भी दिखाई दे रहें है।

यहाँ पर हमको काला और नीला जमीन दिखाई दे रही है और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

उस रास्ते में हमको एक आदमी भी आते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक आदमी इस पेड़ के नीचे और वहाँ पर तीन आदमी उस पेड़ के नीचे बैठे हुए भी दिखाई दे रहें --

और लोहे की छड़ों वाला एक गेट अ ए एक बाउंड्री भी दिखाई दे रही है और ऊपर टीन डाली हुई भी दिखाई दे रही है और कई सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

भाइयों जैसा की आप सभी लोग देख रहे है | हमको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में हमको एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

भाइयों जैसा की आप सभी लोग देख रहे हैंहमको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है और रास्ता भी दिखाई दे रही है। जमीन पे उगी घांस भी दिखाई दे रही है और --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

जब सड़क भी दिखाई दे रही है एक गेट दिखाई दे रहा है। घर दिखाई दे रहा है फूल भी दिखाई दे रहे हैं। कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।